यह ब्लू कलर की टी शर्ट में एक प्लंबर है।

यहाँ पर काफी सारे मिट्टी रखी हुई हैं।

बच्चों के लिए काफी सारे खिलौने हैं।

फोर व्हीलर्स को रिपेयर किया जाता है।

हर किसीम का सामान स्ट्रीट का समना प्लास्टिक का समान --